साथ में इन बिल्डिगों में लाइट्स है।

जहां पर एक सुंदर सा गांव है।

और साथ में थोड़ा ब्लैक भी है।

इन चेयर्स का कलर वाइट है।

खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

और घरे पेड़ लगे हुए हैं।

यह बीचो-बीच चल रही है।

रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर मेडिकल स्टोर का--

दोनों तरफ खिड़कियां लगी हुई है।

आरती पकड़ने वाली थाल रखी हुई है।

यहाँ पर बहुत ही सुंदर सजावट की हुई है।

यह मुझे कोई कपड़े की दुकान लग रही है।

पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग के साथ पेड़ भी लगे हुए है।

इस घर के सामने बहुत सारी गाड़ियां खड़ी--

यहां पर टेबल के ऊपर कंप्यूटर लगे हुए हैं।

चेयर्स और टेबल दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ से लोग चल रहे हैं।

पार्क में बेंचेस दिखाई दे रहे हैं।

और साथ में हीर इस रेस्टोरेंट के अंदर--

यहाँ मुझे एक--

हरे भरे पौधे लगे हुए है।

टॉयलेट सीट्स दिखाई दे रही है।

यहाँ पर बहुत सारी टॉयलेट शीट्स है।

यहाँ मुझे एक सड़क दिखाई दे रही है।

एक सुंदर सी पेंटिंग बनाई हुई है।